यहां पर दो आदमी है जो कार को बनाते हुए नजर आ--

तलाब का पानी हरा दिखाई दे रहा है इसके सामने एक बाइक भी खड़ी नजर आ--

यहां पर बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई है।

और येलो कलर की खूब सुंदर कुर्सियां अच्छी तरह से सजाई हुई दि।

शॉप में बहुत सारी सामान बेचने के लिए रखे गए हैं।

मैं देख पा रही हूं यह एक बड़ा सा तलाब है तलाब को चारों तरफ से किनारे से--